यहाँ पे टेंपो भी लगा हुआ है। गाछ-वृक्ष है। लोग काम करवाने के लिए आए हुए हैं। बिल्डिंग व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

यहाँ पे तीन गो शटर है। ऊपर में पंखा लगा हुआ है। ब्लू कलर का खाचा बना हुआ है। कुर्सियाँ रखा है यहाँ पे टेबल है पंखा है झंडा है किताब-कॉपीयाँ रखा हुआ है बल्ब जल रहा --

एक हॉल है हॉल में दुर्गा माँ का फोटो लगा हुआ है और ब्लू कलर से रंगा हुआ है वहीं सामने कार रखा लगा है।